सामने एक महाकवि तुलसीदास महाविश्वविद्यालय --

जिसकी दीवार की पेंडिंग वाइट कलर से की गई और जिसका गेट ब्लैक कलर का है और अंदर कुछ लोग और आस-पास कई पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पानी एक बहुत बड़ा विशाल रथ दिखाई दे रहा है जिसको छह घोड़ों का स्टैचू है और एक अंदर की ओर बैठा हुआ हैं।

सामने एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी हुई है जो त्रिशूल हाथ मे लिए हुए हैं और छोटी सी प्रतिमा नीचे भी स्थापित है।

बेलून से भी सजावट की गयी है और ऊपर वाली मंजिल पे ब्राउन कलर का गेट लगा हुआ है और वहाँ भी कई गुब्बारों से डेकोरेट किया गया हैं।

सामने एक बोहोत विशाल मंदिर है जिसको वाइट और ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है और एक बोहोत विशाल गेट भी है जिसको ब्लैक कलर से पेंट किया गया हैं।

सामने एक बोहत बड़ा सीता -राम का मंदिर हैं।

देखिए ऊपर ही एक शिवलिंग को स्थापित किया गया है और दो मूर्तियों को भी लगाया गया है मंदिर के ऊपर एक लाल कलर का झंडा भी लगा हुआ है।

ये लाइटिंग को भी लगाया गया है और आसपास कई सारी गाड़ियाँ खड़ी है और पास में ही एक बड़ी- सी येलो कलर की बिल्डिंग बनी है और स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं।

ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है और मंदिर के पास में ही छोटा -सा कुंड बना हुआ--